यह एक हॉल है| यह बहोत बड़ा हॉल है| इसमें थोड़ा-थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है| बाहर बाहर के नियर दो लड़के दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पैलेस है जिसपे शादी होती हैं। हमारे इधर भी काफी शादी होती हैं जिस पर हम जाते हैं और खाना वाना खाकर आते हैं।

वहां तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो एक साथ हाथ करे हैं और इनमें से एक की शाइट का कलर कारा उसकी भी शर्ट का कलर काला और एक टोपी लगाए हुए है।